ये फोटो किसी शादी या फिर कोई फंक्शन का है।

जो फोटो लेने के लिए खड़े हैं और एक बाइक भी लगाया हुआ है।

वाटरफॉल हो रहा और कुछ लोग बैठ के देख भी रहे हैं।

बहुत खूबसूरत नजारा है रात के समय का सीन है।

एक गेट भी है बाहर छोटा-सा जो कि खुला हुआ है।

यह फोटो किसी फंक्शन का है जहाँ कुछ महिला लोग मिलकर डांस कर रही हैं।

जहाँ नीचे बैंक भी है और ऊपर--

यह फोटो किसी खाली घर का है जो अभी बना नहीं है बन ही रहा--

जिसके ऊपर एक आदमी चढ़कर फोटो खिंचवा रहा है।

जो कि रोड के किनारे से लिया गया है।

और रोड पूरा खाली है।

बिजली का खंबा भी लगाया गया है।

सफेद और हरे रंग का बलून भी है।

ये फोटो किसी--

जहाँ एक बाइक लगा हुआ है।

और एक बाइक से एक आदमी आ भी रहा है।

जहाँ पे एक काले रंग का कार है।

पीछे कुछ लाइन का बोर्ड भी है।

ये एक फोटो है किसी गार्डन का--

पाइप भी रखा हुआ है मैदान में पौधों में पानी पटाने के लिए।

जहाँ एक गाड़ी रखा हुआ है और एक--

और घर का बिल्डिंग जो है।

ये एक फोटो है जो किसी समुद्र किनारे का है।

जो एक बंद है और कुछ पंखे हैं जो चल रहा है।

यह फोटो किसी बुद्ध--

जहाँ पे जय भारत जय भीम भी लिखा हुआ है।

यह फोटो एक हॉल का है जहाँ बहुत सारी लड़कियां और लड़के--

यह फोटो किसी जनरल दुकान का है जहाँ फ्रंट में बहुत सारे--

जहाँ एक ही दीवार पे चार घड़े लगाए गए हैं।

और एक टेबल है जहाँ एक आदमी बैठा हुआ है।

फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा है।

यह फोटो किसी जिम के बाहर से लिया गया है।

जो ऊपर में अनीश दा मास्टर जिम लिखा हुआ है।

और नीचे की तरफ मेडिकल्स है जहाँ अंग्रेजी--

और कुछ मोबाइल का दुकान भी है।

जहाँ पेड़ को काटकर--

और बिस्तर है जिस पर सफेद चादर बिछाया हुआ है।

बहुत ही ऊपर की तरफ है उसका जूरा और पीछे का बैकग्राउंड भी काफी सुंदर है।

बोरे और पाल से ढका हुआ है।

टेंट और पाल से घेरा हुआ है।

और एक कार है जिसमें पेट्रोल डाला जा रहा है।

और ऊपर से बहुत सारा लाइन का तार भी गया हुआ है।

यह फोटो किसी फूल के बाजार का है।

और आगे कुछ टोकरी है जिसमें फल भी रखे हुए हैं।

और कुछ गेंदे का फूल है और कुछ गुलाबी रंग का भी फूल है कुछ सफेद रंग का।

ये फोटो है जो एक जिम का है।

बहुत सारे डंबल यहाँ रखे हुए हैं और बहुत सा सामान है बॉडी बनाने वाला--

होटल के दोनों तरफ एक-एक बाइक लगाया हुआ है।

एक डाक घर का है जहाँ ब बैनर लगाया हुआ हैं फुलवारी शरीफ ऊपर डाक घर।

जहाँ बहुत सारे बलून से डेकोरेशन किया हुआ है।

ये फोटो किसी पार्क का हैजहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है।

और बहुत सारे हरे भरे घने पेड़ भी हैं यहाँ--

सफ़ेद और भूरे रंग का पेंट भी किया हुआ है एक पेड़ है जो टेढ़ा भागा हुआ है और --

पर्दे हैं जो बुरे रंग के हैं।

ये फोटो किसी होटल का है।

बहुत सारी महिला बैठकर योगा कर रही है।

और पीछे बैनर है जिस पे कृति योगा भी लिखा हुआ है।

जहाँ ऑरेंज और सफेद रंग के--

सफेद हरे और उजले रंग का--

व बलून से सजाया हुआ है एक--

किसी दुकान के ओपनिंग का है।

और कुछ एक्सेस का दुकान है यह शोरूम --

एक लड़की है ठंड के समय का है यह फोटो --

कुछ बालून से डेकोरेशन किया हुआ है ऑरेंज रंग बालून है।

सोफे लगा है और ब्राउन रंग का पेंट है पर एलईडी --

बहुत सारे लोगों का भीड़ है यहाँ पे--

ये फोटो किसी किराने दुकान का है।

जो लेटा हुआ है नीचे जमीन पर--

जहाँ कुछ महिला है बैठकर पूजा कर रही हैं।

ये फोटो रात के समय का है।

एक आदमी है जो साइकिल पर झुककर खड़ा है।

ठंड के समय का फोटो है इसलिए ऊपर पंखा बंद है।

ये फोटो किसी झरने का है।

जहाँ पे पानी का बहाव आ रहा है बहुत ही खूबसूरत--

ये एक घूमने वाला जगह है बहुत ही खूबसूरत--

शाम के समय का है शायद ये फोटो --